ये एक दृश्य है जहाँ पर बहुत सारे पत्थर नजर आ रहे हैं यहाँ पत्थर के बीच में पानी नजर आ रही है जो की पानी से है यहाँ पे आस-पास में बहुत सारे पेड़-पौधे भी हैं।

और वहां पे उसके ऊपर में प्लस का आइकॉन नजर आ रहा है।

तो दूसरी और हम देख रहे है की एक इंसान जो की मछली को बना रहा है और यहाँ खरीदने के लिए बहुत लोग आए है।

इंसान जोकि लाल रंग की कुर्सी पर बैठ के कुछ लिख रहा है और यहाँ पे हम देख सकते है टेबल का रंग भूरा है।

यह कोई झरने का तस्वीर है जिसमे हम देख रहे है की ऊपर पहाड़ों के बीच से पानी नीचे की ओर आ रहा है और एक नदी में जाके मिल रहा है।

बहुत सारी चीजें जैसे की तार रखी गयी है पियानो रखी गई है और सामान रखने के लिए बक्सा जैसा बनाया हुआ चीज़ भी रखा गया है।